इस तस्वीर में बहोत सारे पश्चियाँ दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दिखाए गए तस्वीर में सफेद रंग का एक चिड़िया नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक पेड़ नजर आ रहा है।

होटल के अंदर एक आदमी नजर आ रहा है।

चित्र में सीढ़ियों पर बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक नदी की है।

इस चित्र में तीन औरत नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक पीले रंग का वाल नजर आ रहा है।

मेट कई रंग के है।

इस तस्वीर में एक घड़ी दिखाई दे रही है।

ऊपर दिखाए गए चित्र में एक महिला दिखाई दे रही है।

गुलाबी रंग के कागज के पास एक पॉलीथीन के अंदर कुछ समान है।

ऊपर दिखाए गए चित्र में एक छोटा सा पहाड़ नजर आ रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे आदमिया है।

इस चित्र में पीछे बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे है।

इस चित्र में एक एक पीले और नीले रंग का केक दिखाई दे रहा है।

ऊपर दिखाए गए चित्र में बहोत सारे आदमिया नजर आ रहे है।

चारों प्लेट में खाना रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक होम थिएटर दिखाई दे रहा है।

ऊपर दिखाए गए चित्र में बहुत सारे लाइट्स दिखाई दे रहे हैं।

ये चित्र एक शादी की है।

यह चित्र किसी पार्क की दिखाई पड़ती है।

इस तस्वीर में दीवार का रंग सफेद है।

चारो लड़किया डांस करते हुए नजर आ रही है।

ऊपर दिखाए गए चित्र में बहुत सारे रिक्शा और मोटर बाइक नजर आ रहे हैं।

एक आदमी कॉटन कैंडी लेते घूम रहा हैं।